पीले रंग का त्रिपाल है एक व्यक्ति हाथ में कुछ ले के जा रहा है।

और सड़क के ऊपर लाइन खींची हुई है जिसमें एक केबल है।

स्कूल है बच्चे लाइन में लगे हुए हैं।

नमाज पढ़ रहे हैंये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है।

वो और कार है एक --

सफेद रंग की टंकी है झंडा है काले रंग की दो टंकी हैं दो पत्थर की बनी हुई टंकी हैं।

बंधन बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

सफेद कपड़े पहन रखे हैं एक ने नील पीली शर्ट --

एक स्टैंड बना हुआ है चार खंबों पर खड़ा हुआ है।